ऊपर टेबल पे तीन ट्राम रखे हुए हैं उसके अंदर दो तीन लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

बाहर की ओर एक बाइक भी लगाया हुआ है।

दीवार के ऊपर से तार गुजरी हुई हैं जो की उजले रंग की दिखाई पड़ रही हैं।

नीचे फर्श व्हाइट कलर का और यलो कलर दिखाई पड़ रह है।

यह दृश्य एक नदी का है जहां पे बहुत सारे पानी बह रहे हैं।

अगल बगल बहुत सारे पत्थर भी हैं जो कि भूरे रंग के दिखाई पड़ रहे हैं।

यह दृश्य एक पार्लर का है जहां पर एक चेयर लगाया हुआ है जो की ब्लैक कलर का है।

एक आदमी बांस के ऊपर बैठा हुआ है एक एक प्लिंथ पे बैठा हुआ है।

ऊपर की ओर बहुत सारे छड़ निकले हुए हैं जो कि ब्राउन कलर के दिखाई पड़ रहे हैं।

ऊपर में एक आरो लगाए हो जो की वाइट कलर का है उसके बगल में एक मिरर भी है।

यह दृश्य एक पार्लर का है जहां पे एक चेयर पे एक लड़की बैठी हुई है।

एक हाथ में उसने फोन ले रखा है जो की वाइट कलर का कवर दिख रहा है।

नीचे की फर्श व्हाइट कलर की टाइल्स है।

इसका एक दरवाजा खुला है शीशे पे एक रेड कलर का चुनरी बंधा हुआ है।

यह दृश्य एक गार्डन टाइप से कुछ का है जहां पे एक बहुत ही बड़ा गार्डन है उसमे बहुत सारे हरा बरा घास है।

साइड में एक खिड़की है जो कि बंद है और वो उजले रंग का दिखाई पड़ रहा है।

इसके ऊपर प क परिवार कल्याण स संस्थान पटना लिखा हुआ है।

ऊपर गोपीनाथ सिंह महिला विद विद्यालय लिखा है।

इस दृश्य में एक पोस्टर दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर द लिंगो लिखा हुआ है अंग्रेजी बोलने सीखें लिखा हुआ--

यह दृश्य एक दुकान का है यहां पे ऊपर फूल लटकाए हुए हैं जो कि गेंदे के हैं और ऑरेंज कलर --

एक स्टार भी बनाया हुआ है जो की येलो कलर और से डेकोरेट किया हुआ है।

नीचे स्टेज पे बहोत सारे कटे हुए रिबन गिरे हुए हैं।

दीवार पे दो तीन पोस्टर भी टंगे हुए हैं।

सामने के साइड एक टेबल भी लगाया हुआ है जिसपे दो बुके रखे हुई हैं।

इस दृश्य से मैं बहुत सारा बॉक्स नजर आ रहा है जो की येलो व्हाइट कलर का है उसपे ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे एक चेयर है जिस पर टावल ओढ़ाया हुआ है साइड में टेबल पे एक बुक भी रखा हुआ है।

लकड़ी के पटरे बिछाए हुए है लकड़ी के पटरा का कलर क्रीम कलर का है साइड में दीवार है।

एक कपबोर्ड में एक साइड डिब्बे और भरे हुए हैं।